इस स्टेज के बगल में एक व्य--

यहाँ पर खाना स्वादिष्ट बनाते हैं।

सोने कलर के हैं इस स्तंभ के ऊपर में --

यह एक सड़क है यह सड़क --

तथा तरह-तरह के आनंद करते हैं।

जो पुल के अंदर पानी बह रही है।

इ जगह पे कपड़े खरीद कर आदमी --